यहाँ पे चार लोग नज़र आ रहें हैं। एक आदमी कुर्सी पे बैठा दाढ़ी बनवाता नज़र आ रहा --

एक छोटी सी सैलून नजर आ रही है उ दीवाल पर एक पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।

दो बच्चे बाहर बैठे नजर आ रहे हैं।